कपड़े रखे हुए पॉलिथीन वाले हुए पॉलिथीन बंधी हुई रखी हुई है कुछ कुछ पॉलीथिन और भी बंधी हुई रखे है नीले कलर की पीले कलर के लाल कलर गुलाबी कलर की हरे कलर ---

दिख रहा है उसमें बाइक खड़ी हुई है उसके आजू-बाजू में घास उग रहा है।

और वहाॅं पर खंबा बना हुआ हैं डीपू का और उसमे लाइट की डोरी लगी हुई हैं उसके बाजू में पत्थर पड़ा हुआ है। उसके बाजू में डार्क कलर --